ऊपर से इनकी मरम्मत की गई है। यहाँ काफी इसकी मरम्मत मिस्त्री अपनी --

मन को कोमल करने के लिए आते होंगे। यहाँ के ये दृश्य बहुत ही सुंदर है। यहाँ लोग घूमने --

अपनी मनपसंद दिखाई दे रहे है लोग अपनी बहुत ही खुशी में --

है जो अपनी नजारों को देख पा रहे है और यहाँ की सुंदरता बहुत ही सुंदर --

यह हाजी पुर का मॉर्केट मार्केटिंग लुक है। यहाँ काफी लोग अपनी आने-जाने में लगे है। यहाँ टेम्पो भी लगे हुए है।

है है के जीन्स में काफी अपनी लोगों को परसन्नता मिल --

यह महल है। यहाँ पे एक मशीन रखी गई है। यह बोहोत ही सुंदर --

यह एक दुकान है। यहाँ पर काफी रखे हुए हैं।